लेटे हुए दिखाई दे रहे रस्ता दिखाई दे रहा है बाइक दिखाई दे रही है नारियल के झाड़ के पत्ते दिखाई दे रहे है।

तिथे है आये नीचे का स्पोर्ट्स दिखाई दे रही है। दीवार दिखाई दे रहा जो कि अ पत्र कलर का है। और लाइटे भी दिखाई --